उस घर में किया हुआ ओरेंज है उसी के सामने एक बाइक भी खड़ी हुई है।

उसी के नीचे रोड बनी हुई है रोड पर ईंटें बिछी हुई हैं और आसमान का कलर नीला है।

इसमें देखिए पिंक वाइट ब्लू ऑरेंज और पीछे एक आदमी खड़ा है।

पिंक ग्रीन येलो ब्लैक रेड और उस नीचे मार्बल बिछा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

कुछ डिजाइन दार पेड़ दिख रहे हैं आसमान का कलर नीला भी हो रहा है।

उनके नीचे मैट का कलर और ग्रीन है।

पीछे ग्राउंड में छोटी छोटी घास भी उग रही है और पीछे बहोत सारे पेड़ भी खड़े हैं।

दूसरी का कलर येलो है और एक का कपड़ा वपड़ा ब्लैक एंड व्हाइट भी है।

पोस्टर भी दिखाई दे रहा है इसमें यीशु का फोटो भी लगा हुआ है।

बहोत सारे पेड़ भी खड़े हुए हैं नीचे छोटी छोटी हरी हरी घास उ उग रही है आसमान का कलर नीला भी है।

सामने एक घर का दिख रहा है जिस पर रेड कलर का पेंट हो रहा है पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इनका एक गाड़ी का नंबर यू_पी उनीस टी पैंतीस छत्तीस है।

पाइप भी दिखाई दे रहे हैं और रात का समय हो रहा है और लाइट जल रही है।

यहां एक इंस्टिट्यूट दिखाई दे रहा है इस पे जस्ट डिजाइंस इंस्टिट्यूट लिखा हुआ है।

ऊपर लाल कलर की एक पाइप भी लगी हुई हैं एक फायर अलार्म भी लगा हुआ है।

यहां सामने एक फूलों की पालकी रखी हुई है।

उसके चारों तरफ कुछ पे दो दीवालें हो रही हैं बहुत सारे आदमी भी घूम रहे हैं।

नीचे व्हाइट कलर का मार्बल भी बिछा हुआ है।

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक बेड पड़ा हुआ है।

और ऊपर से ब्लू कलर की चादर भी दिख रही है।

इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं।

उसके ऊपर छोटे छोटे लाइट भी लगी हुई है।

सुमित पब्लिशिंग हाउस मोंटेसरी पुस्तक के उत्कर्ष प्रकाशक लिखा हुआ है।

ग्रीन रेड एंड ब्लू व्हाइट कलर के बैलून लगे हुएं हैं।

यहां सामने एक मीटिंग हॉल लग रहा है यहां बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और साइड में दौने भी रखे हुए हैं। उसी की साइड में फिनायल की बोतल भी दिखाई दे रही है। एक रैक में रखी हुई हैं।

और बेड पर एक नीले कलर के दो तकिया रखे हुए हैं।

एक दो सोफे भी पड़े हुए हैं जिनका कलर ब्लैक है।

साइड में एक रैक है जिसका कलर ब्राउन है नीचे डिजाइन भी बना हुआ है।

हरे कलर में दिखाई दे रहा है। यहां डेटॉल और सैवलोन जैसे साबुन भी रखे हुए हैं और नीचे कुछ हैंडवॉश भी रखे हुए हैं।

उसका लाल सफेद कलर से मार्बल से बना हुआ है।

इसने पेंट और शर्ट पहन रखी है।